इस पिक्चर में एक बहोत बड़ा पेड़ नजर आ रहा है साथ ही बहोत बड़ा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा--

पर बहोत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं।

इस पिक्चर में एक बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है जहां पर--

ज्यादा कार खड़ी हुई हैं कार के साथ में कुछ मोटरसाइकिल और कुछ व्यक्ति भी यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे--

छत के ऊपर को बहोत सारी सरिया निकाली गई है जिससे ऊपर का लेंटर डाला जा स --

हालांकि यहां पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा--

फिलहाल छुट्टी होने के कारण यहां पर कोई बच्चे नजर नहीं आ--

इस पिक्चर में एक बहु मंजिल इमारत दिखाई दे--